यहाँ पर शिरडी के साई बाबा का दरबार सजा रखा है उन्हें फूलों से सजा रखा है साथ मे उनकी समाधि भी सजा रखी है।

हमारे सामने जो दृश्य है यहाँ पर हम देख सकते है कि बहुत सारी चुड़ियाँ हैं।

यह दृश्य मेले का दृश्य है जो कि ऊपर से लिया गया है।

तथा मोलाना और एक आदमी बात कर रहा है यहाँ पर घड़ी भी लगी है तथा पीछे दरगाह भी है।

माँ दुर्गा का पंडाल है नव दिन देवी की पूजा की जाती है। इस पंडाल में हम --

यहाँ पर तरह तरह के बल्ली और फट्टे लगे हुए है जिसके आगे जो एक --

बहोत ही साक सज्जा की गई है। लाइटें लगी हैं परदे लगें हैं।

इस पर मयूरियम ई रिश रिक्शा लिखा है। यह नीले कलर का ई-रिक्शा है |

यह एक ड्राइ क्लीन की शॉप है जहाँ पर कपड़ों की धुलाई हो --

यहाँ पर तरह-तरह के फूल फूल की लड़िया पत्तों की लड़िया --

यह एक डोसे का चित्र है। डोसा दक्षिण भारत का एक बहोत ही प्रसिद्ध व्यंजन है। इस डोसे को --

बोहोत ही सुंदर चलचित्र बना रखा है करपुतलियों के द्वारा। हमारे शास्त्र संगीत को दर्शाया गया है।

दिखाई दे रहा है रंग-बिरंगा अरग अरग वेराइटी का तथा ये जो खड़े है ये इस दुकान के मालिक है।

छोटी बड़ी हर तरीके की बुक्स बेची त तथा रखी हुई हैं और ग्राहक यहाँ पर बुक लेने के लिए खड़े व बैठे हुए हैं।

यह तस्वीर मयूरिया ई-रिक्शे वाले की दुकान की तस्वीर है।

जैसे कि अनाज खाने पीने की चीजें तथा घरेलू समान अलग-अलग --